व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो अपने बाल कटाता नजर आ रहा है।

यहाँ एक ब्रैंड पोर्ट नाम की दुकान दिखाई गई है जहां बहुत सारी मिल्टन की बोतल रखी हुई हैं।

छत पर कुछ बल्ब लगे हुए हैं वे फर्श पर --

स्कूल पेले रंग से रंगा हुआ दिखाया गया है।

जोकि कुछ ना कुछ बिछाकर बैठे हुए है यहाँ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक खंभा लाइट वाला भी लगा हुआ है।

हरी घास उगी हुई दिखाई दे रही है। यहां --

हरे रंग की बिल्डिंग भी है यहाँ सामने की तरफ कुछ वृक्ष लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाया गया है। दीवार पर कुछ ए.सी. लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है। पेट्रोल पंप को नीले सफेद व लाल रंग से रंगा हुआ है।

यहाँ एक मैदान को लाइटों से सजाया गया है जहाँ रंग -बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं।

झालर लगी हुई हैं व पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यहां एक लोहे का पुल भी दिखाई दे रहा है। यहां कुछ खंबे पर तार फैली हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां एक डॉक्टर की दुकान दिखाई गई है जिस पर बोर्ड लगा है सरला क्लीनिक ।

डॉक्टर अरुण कुमार यादव यहां कुछ व्यक्ति खड़े हुए।